इसमें बहुत सारे कलर लाइट डेकोरिंग किया गया है उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं।

इसे देख के लग रहा है उन लोग फोटो खींच रहे हैं।

चित्रों में बहुत सारे चेयर और कंप्यूतर दिखाया गया है।

इस छवि को देख कर दिन को खींची गई फोटो है।

में बड़े बड़े गाड़ी के टायर रखे गए हैं।

फोटो एक होटल रूम की है।

यह छवि एक मार्केट की छवि है।

घर के बगल में ही मेन रास्ता दिखाया गया है।

एक छवि एक रेस्ट्रो की फोटो है।

ये चित्र रात को ली गई फोटो है।

इसके आगे बहोत बड़ा सा वाल है।

देख के ये मालूम होता है कि ये एक पार्क है।

चित्र में हमें एक वॉलपेंटिंग दिखाया गया है।